ये एक ब्रिज की जगह है जहा पर एक बोट खड़ी हुई है जिसके जहा उसके ऊपर--

जिसपे दो हिरण है।